दुकान दिखाई दे रहा है यहां पर--

प्लास्टिक फ्रिज ऑन भी लिखा हुआ--

सामान ले जाया जा रहा--

है स्टोर में लाईन में समान लगाया हुआ है।

कुछ लोग बैठ कर यहां खाना खा रहे है।

यहां पर चार स्कूटी एक लाइन में खड़ी हुई--

हैं। बिल्डिंग के दोनों के बीच से एक रोड जा रहा--

आदमी के पीछे बहोत सारी बुक्स दिखाई दे रही है।

मेरे सामने मच्छीयाँ दिखाई--

कुछ लोग छत पर लकड़ी पर बैठे हुए--

सामने एक स्टेज प्रोग्राम भी--

हए ग्राउंड में रात का मौसम--

यहां पर एक बेड लगा हुआ है और--

भी दिखाई दे रहे है यहां पर कुछ लकड़ी से बना हुआ घर भी--